--देख सकते है कि हमें ऊपर खुले बादल नज़र आ रहे है काफी सारे घने बादल निचे की तरफ हम देख सकते है हमें बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ दिख रहे है उसकी जड़े तने वगैरह --

और उसमें हिंदी में बहुत कुछ लिखा गया हैं मोटे -मोटे अक्षरों में नीचे हमें पिल्लर्स देखने को मिल रहे है दस बारह और यहाँ पे मट्टी हमें दिख रही है जो कि वहाँ पे ल रखी गई है लायी गयी हैं वहाँ --